तो आप लोग देख सकते है यहाँ पे काफी बड़ी काफी बड़ी-बड़ी यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं बहोत सारी।

और काफी बड़ा भी है और एक आदमी उसके ऊपर चढ़ के नेहला रहा और एक आदमी इस पर पानी छिठ रहा है और पीछे काफी बड़ा समुन्द्र है ।